ये कोई सी बड़ी सी पब्लिक प्लेस है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे एकदम मतलब रेनफॉल जैसा बना हुआ है फाउंटेन --

ये एक होटल है कर्नाटक में यह दो-तीन फ्लोर का होटल है नीचे पार्किंग बनी हुई है अंडरग्राउंड यहाँ पर अंदर भैया जा रहे हैं जीने लगी हुई--

यहाँ एक टेबल रखी है जिस पर बच्चे पढ़ रहे है यहां पे बहुत सारे बच्चे है आठ दस और एक उन्हें पढ़ रहे है और आठ दस बच्चीया भी है।